कुछ ट्रेक्टर दिखाई दे रहे हैं कुछ एजेंसीया दिखाई दे रही--

यहाँ एक गली है जहां से कुछ लोग जा रहे हैं आसपास घर भी है।

यहां पे हर तरह की सुविधाएँ मौजूद है डाक सेवा से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएँ हैं सभी मिलती है।

और आसपास पेड़-पौधे हैं पहाड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं और चारों तरफ कुहासा की तरह दिखाई पड़ रहा है इसमें--